एक ये कपड़े का दुकान है जिस कपड़े के दुकान मे अ लाइट लगी हुई है और अगल-बगल दिवारे है।

गए इस स्टैन्ड मे बोहोत सारे सूटे टंगे हुए है। ए बच्चों का ड्रेस टंगा हुआ है। नीचे भी कपड़े रखे है।

और हरी घास जमी हुई हैं अगल-बगल हरे-भरे पेड़-पौधे भी है बादल सफेद --

बड़ा सा मैदान है जिस मैदान में हरे घास जमी हुई है और दो दो बे दो लड़के बेट रखे हुऐ हैं जो जा रहे हैं।

अगल-बगल बड़े से मकान बने हुऐ हैं मंदिरे है हरे-भरे पेड़-पौधे हैं बादल सफ़ेद हैं।

और एक बगल से पेड़ है और पेड़ के बगल से कुछ गिट्टियाँ रखी है जो मजदूर काम कर रहा है गाड़ियां खड़ी है।

मिट्टी निकली हुई हैं म-मैदाने हैं जिसमे हरे-भरे पेड़ पौधे हैं । बादल सफ़ेद--